यहां पर बहुत सारे बाइक और स्कूटी रखे हुए हैं।

यहां पे दाहिने की तरफ एक ब्लू कलर का बाइक दिख रहा है।

इधर बाएं तरफ में एक ए_सी रखा हुआ है।

बाएं तरफ एक आदमी ने लाइट ब्लू शर्न और जींस पहना हुआ है।

यहां पर दीवार का रंग सफेद है।

बोर्ड का नीचे एक सिल्वर कलर का बाइक भी है।

यहां पे बोर्ड में बड़ा से एल_जी लिखा हुआ है।

यहां पे दाहिने कोने पे एक व्हाइट कलर की बिल्डिंग भी है।

यहां पे ऊपर में ब्लू कलर का तिरपाल लगाया हुआ है।

यहां पे दाहिने कोने में एक जेंट ने व्हाइट जर्सी और पैंट पहनी हुई है।

यहां पर बाएं कोने में एक जन ने व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक पेंट पहना हुआ है।

यहां ऊपर की ओर बहुत सारे लाइट्स लगाए हुए हैं।

यहां पे एक बड़ा सा फील्ड दिख रहा है।

के दाहिने तरफ एस_बी_आई का साइन बोर्ड भी लगा हुआ है।

नीचे में एक ग्रीन कलर का कार्पेट बिछाया हुआ है।

यहां पर बहुत सारे हरे भरे प्लांट्स लगाए हुए है।

यहां पर फ्लोर का कलर सफेद है।

यहां पे बीच में एक बैठे हुए आदमी ने ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ है।

यहां पे दाहिने कोने पे एक काला रंग का बैग भी रखा हुआ है।

यहां पे वॉल का रंग पिंक कलर है।

यहां पे पीछे काफी हरी भरी गच्छियां दिख रही है।

इस घर के आगे बहुत सारे फ्लावर भी लगाए गए हैं।

फ्लावर के पोट्स का रंग ब्राउन है।